दुकान के बाहर दो डमी कपड़े पहने हुए दिखाई--

इस इमेज में बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लोग खड़े हुए कुछ बैठे हुए है।

दो लड़कियां खड़ी हुई है और कुछ लोग बैठे हुए हैं यहां पर स्टेज पर एक बड़ी सी एल_इ_डी --

इस इमेज में कुछ शॉप दिखाई दे रही है जिनमें कुछ सामान भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर --

दिखाई दे रही है मंदिर के अंदर एक व्यक्ति खड़े हुए हैं और कुछ व्यक्ति और भी खड़े हुए हैं दीवार पर --

और कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं यहां पर लाइट का खंभा भी--

इसके बाहर बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है घंटियां भी दिखाई दे रही है छत पे झंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है बाहर कुछ पेड़ पौधे भी --

टेबल पर कुछ किताबें और भी सामान दिखाई दे रहे हैं।

इसके किनारे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है दीवार पर--

यह इमेज एक जिम की है यहां पर एक्सरसाइज करने की --

दो तकिए लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

येहे इमेज एक बैंक की हैं।